इस दृश्य में तीन मजदूर नजर आ रहे हैं और एक व्यक्ती जो खड़ा है शायद वो लगता है कि वो ठेकेदार है या मकान मालिक मकान कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसमें कुछ गमले रखे हुए हैं और कुछ गिट्टिया रेत और सीमेंट से सभ्न्दित काम किया जा रहा है।